यह एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग बहुत ही बड़े है और बिल्डिंग के चारों ओर ग्राउन्ड किया गया है और पीछे मे बहुत सारे पेड़ हैं और आगे मे एक गली भी है ।

और ग्राउन्ड कर दिया गया है ताकि यहाँ पे कोई चल या फिर जानवर पक्षी अंदर ना आ सके |

यह कुछ ले रहे हैं लाइन मे खड़े हो के। कोई बच्चे गोदी मे लेके खड़े हैं तो कोई ऐसे ही खड़े हैं।

कोई कोचिंग संस्थान है और सामने लिखा हुआ है बहुत सारे फॉर्मूला दिवाल में और इधर लिखा हुआ है माँ सरस्वती।

ताकि कोई पार्क मे ना दौड़े और पार्क मे दौड़ने के कारण गाछ वाछ टूट जाता है सब फुट जाता है।

और उसके साइड मे एक ठेला फल वाले खडे हैं और वो फल बेच रहे हैं गाव मे मतलब मुहल्ले-मुहल्ले में घूम-घूम के।